और सरकारी काम भी कुछ कुछ होते हैं यहां पे दो तीन लोग हैं जो उस उसके अंदर जा रहे अपना काम करने।

ये एक मस्जिद है जो जहानाबाद में हैं ये मस्जिद बहुत पुराना है इसकी बहुत ज़्यादा मान्यताये भी--

यह मस्जिद बहुत पुराना है।

ये एक कैफ़े है जो बोधगया में है ये कैफे का इंटीरियर डिजाइन बहुत सुन्दर है यहाँ पे कॉफी बहुत टेस्टी और डिलिशियस मिलता है।